बड़े बड़े पेड़ हैं एक छोटा सा पौधा है।

और जमीन पर घास निकली हुई है।

यह एक बैनर लगा हुआ है ब्लैक कलर का जिस पे लिखा है चार बाग--

चप्पल काले कलर की पहने पाइप लिया है काले कलर का।

एक बड़ा सा मैदान है जिसमें हरी पीली घास उगी हुई है।

एक औरत बैग लटकाए हुए जा रही है।

ये एक कमरा है जिसमें खूब ढ़ेर सारी मूर्ति रखी हुई है भगवान की।

दो कटोरी रखी हुई है इसमें दो नोट और दो सिक्के रखे हैं।

रोजी कलर की सब टाइल्स लगी हुई है।

दोनों तरफ एक पुतला पेहन के बैठा हुआ है।

एक पुतला पेहन के सूट खड़ा है।

जिसमें चार पंखे लगे हुए हैं।

लाइट छोटी छोटी लगी हुई है।

इसके ऊपर एक कांच की खिड़की लगी हुई है जिसमें छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं बहोत सारे।

एक आदमी खड़ खड़ा है टी शर्ट काली पहनकर।

ये एक रोड है जिसमें नीले कलर का बैनर लगा हुआ है।

और साइड में पेड़ लगे हुए हैं।

पांच छतरियां लगी हुई है छोटी छोटी।

एक चिड़िया बैठी हुई है लकड़ी पर।

पीछे बैनर लगा हुआ है चौक सारी रोड --

एक तरफ खाली मट्टी है जिसमें कचड़े फेंके हुए हैं।

एक पल्ला है कॉफी कलर का।

एक सिलेंडर पड़ा हुआ रखा हुआ है बाहर।

ये बहुत बड़ी सी जगह है यहां पे हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे पौधे।

कुर्सियां रंग बिरंगी हैं पी पीली हरी सफेद नीली लाल।

बैनर रेड कलर का लगा हुआ है वाइट कलर का पेंट है।

बहोत सारी लाइट हैं चार पांच--

ये बहुत बड़ी सी जगह है यहां हरी हरी घास निकली हुई है।

छोटे छोटे बोदन बाउंड्री उठी हुई है जहां हरे हरे घास है।

एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पे चॉकलेट कलर की कुर्सी है।

गुलाबी पर्दा लगा हुआ है।

सात गुमछे दिखाई दे रही हैं।

और यीजे बैलून टंगे हुए हैं सजे हैं।

कार है बाइक है सब चल रही है।

और उसके बगल में एक बड़ा सा पेड़ है।

लकड़ी के अह रास्ते बंद हैं।

मैदान दिखाई दे रहा है और बहोत सारे पेड़ हैं।

एक लकड़ी की अलमारी है।

एक बोरी में बर्तन रखे हुए हैं।

छुरी कैंची बाहर और बहुत सी चीजें टंगी है।